जो बत्तख जैसे हैं जिनकी चोच बड़ी है।

जोकि किसी काबिल नहीं है और ये आदमी इस गाड़ी के साथ कुछ ठीक कर रहा ह--

दूसरी साइड से बहुत सा समान है जो की पैकेट में रखे हुए हैं जो कि बिस्तर जैसे लग रहे हैं और मैटस भी वहा पर बहोत सारे है।

जिसमें एक दीवार पर ये पोस्टर लगाए गए हैं बहुत सारे।